यहां एक ठेले पर मछली रखी हुई है।

और अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के इसमें पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक फायर एक्सटिंग्युशर है।

यह एक एल_जी कंपनी का शोरूम है।

कुछ पसंद कर रहे हैं यह एक गैलरी का सीन है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है।

और जो दस्तक ख्वाजा का सिंबल डी है वह ऊपर लिखा हुआ है और सामने एक वृक्ष है।

यह एक केक की दुकान है जिसका नाम द चेरी ट्री बेकरी कैफे है।

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पर कुछ लोग बैठकर खा रहे हैं।

इस पर हद हाउस इक्कीस लिखा हुआ है।

पीछे कुछ खाद्य सामग्री रखी हुई है।

यह सरदार जी साड़ी वाला नाम से एक वस्त्रालय की दुकान है।

सामने मूर्ति लखी हुई है पीछे लोग श्रद्धालु लोग बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं।

और दो तीन महिलाएं आगे मूर्ति के पास खड़ी हुई हैं ऊपर से सुंदर लाइटे लगी हुई हैं।

और लो बच्चे और आदमी बहुत ही खुश प्रतीत हो रहे हैं।

यह एक मेट्रो स्टेशन का दृश्य है जहां पर ऊपर चढ़कर लोग मेट्रो से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।

यहां पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है लोग पीछे बैठकर सब देख रहे हैं।

अपने शरीर को दुरुस्त और स्वस्थ बनाने के लिए यहां पर आते है।

इसका कंस्ट्रक्शन जारी है आगे ईंट गिरी हुई हैं।

यहां पे आगे लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यह गुफा जैसा प्रतीत हो रहा है जो इंसान एक इंसान उसे काट कर रास्ता बना रहा है।

जिसपे मूर्तियां कई सारी रखी हुई हैं एक पुरोहित माइक में भजन गा रहा है।

यह प्रभु निवास नाम से एक अपार्टमेंट है।

जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है यह तीन मंजिला है।

यह एक ढाबा है जिसका नाम न्यू ज्ञानी जी का ढाबा है।